यह एक लड़का लाल टीशर्ट और पीली पेन्ट पहन के पोधो में पानी दे रहा है तीन तीनो चारो तरफ पौधे ही पोधा हैं।

और सामने की तरफ एक घर है सफ़ेद कलर का ब्लेक कलर के उसके गेट की पेंट है और आसमानों पर और घर के पीछे पेड़ है।

यह सामने की तरफ एक घर है कुछ पेड़ पौधे टेंट लग टेंट भी लग रहा है और कुछ पेड़ पौधे भी है और आसमान भी दिख रहा है अच्छे से कुछ लोग भी खड़े है।

देख भी रहे है और ये जिम सस्ता है में भी जॉइन करना--

ओर ये बुलेट एक बाईक के सामने काच वाली वो गेट लग रहा है और फनीचर भी अच्छा सा बन --